इसका कलर फ्रॉक का येल्लो है और ये काफी सुन्दर फ्रॉक है भी जमीन में टाइल्स लगे हुए हैं वाइट कलर के साइड में बॉक्स बना हुआ --

पीछे कोल्डड्रिंक और वाटर की बोतले भी रखी हूई हैं यह पर एक आदमी बैठा हुआ हैं चेयर पर जो की समान बेच रहा है।

पेड़ भी लगे हुए है यहाँ पर यह पर पोस्टर लगा हुआ है बिल्डिंग बनी है जिसका कलर व्हाइट एण्ड ग्रीन है खिड़किया लगी हुई है ब्लैक कलर की।

यहाँ पर बर्थडे पार्टी हो रही है यहाँ पर एक टेबल को कपड़े से कवर किया है गोल्डन कपडे से यहाँ पर बैलून लगे हुए है रेड कलर के पीछे भी बलून लगे हुए है।

वहाँ पे तीनो लोग सूट पहने हुए हैं दूर की साइड पर एक और नाव है ब्लू कलर की जिसमें दो लोग बैठे है जो कि नदी के किनारे पर आ गए है यहाँ पर किनारे पर पेड़-पौधे लगे हुए हैं मिट्टी डली हुई है किनारे।

यहाँ पर काफी सारे फल रखें हुए है जैसे संतरे अनार कैले और भी सामान रखा हुआ है।

नीचे काफी सारी पत्तियां डली हुई है ग्रीन कलर की यहाँ पर कुछ लोग भी बैठे हुए हैं स्टूल में कुछ लोग खड़े हैं और पीछे कुछ समान रखा हुआ है।